यहां पे ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

और यहां पे ये लाल पीले हरे रंग के झंडे दीख रहे हैं।

यहां पर देख सकते हो ये एक लड़का है। ये नाय के दुकान पर बैठा है।

दुकान है ये कपड़ों की दुकान है यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है इसमें नीले रंग की पेंट और नीले रंग की जींस पहन रखी है।

और यहां पे आप देख सकते हो बहुत से फूल से लगे हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो गुड़गांव आवाज लिखा हुआ है।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

और यहां पे दो तीन आदमी और खड़े हैं और यहां पे आप देख सकते हो पेड़ ही पेड़ दिख रहे है।

और यहां पे ये तस्वीर दिख रही हैं यहां पे राधा कृष्ण जी की तस्वीर हैं।

और ये यहां पे खड़े हुए हैं।

देख सकते हो यहां पे ये गमला है और गमले में पेड़ भी दिख रहा है।

और यहां पे ये फर्श दिख रहा रहा है।

यहां पे ये मकान पर तला लगा हुआ है।

यहां पे हम देख सकते हो ये यहां पे ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर नीले रंग का है और इस पे ये छाता भी नीले रंग की दिख रही है।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

ये यहां पे देखने में भी गंदा ही दिख रहा है।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

यहां पे ये घड़ा भी देख रहा है ये यहां पे देख सकते हो --

ये यहां पे आप देख सकते हो ये दो आदमी हैं।

और ये दोनों हाथ में हथोड़ा लिए हुए हैं।

देख सकते हो बुक ही बुक रखी हुई है।

यहां पे गमले भी रखे हुए हैं।